अपना ए.टी.एम. कार्ड ए.टी.एम. मशीन में डालते हैं और पिन कोड डालते हैं उसके बाद --

डराने के लिए और इन्होने बहुत ही अच्छी तरह से पिक बनाने के लिए स्टाइल भी दे रखे है।

और यहाँ से नदी का बहाव चालू हुआ है | यहाँ का सीन बहुत ही मस्त है ।